एक काफी बड़ा पहाड़ है जोकि गांव के बैक साइड में--

ये रेलगाड़ी ये रोड पर चलती है।

यहां पे देख रहे हैं डिजिटल कंपलेक्स --

येलो लाइट येलो कलर की यहां पे चेयर्स --

जो चारों तरफ ब्लैक और लाइटिंग के साथ दिख रहा है उसके बाहर एक एक इंसान अपनी व्हाइट कलर की स्कूटी लेकर बैठा है।

टेस्टी नमकीन ढाबा जोकि बच्चों ने यहां पे प्रोजेक्टर --

और दूसरे एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना--

यहां पे हम देख रहे हैं एक--

एक लाइन बना कर खड़े हैं पैसे निकालने के लिए और--

लगा हुआ है व्हाइट कलर का --

और दीवार के साथ पत्थरों के जो--

काफी बड़े बड़े जंगले लगा कर रखे हैं।